यहां बहुत सारे लोग जमा है।

इधर हमें एक घर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर में है और उसके ऊपर तीन सोलर लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

और आस पास कई सारे फूल और पेड़ भी लगे हुए दिख रहा है।

इस चित्र में कई सारे टूटे हुए गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसमें से एक का रंग ऑरेंज में दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर के नंबर प्लेट भी लगे हुए हैं।

अलग अलग रैक्स पर चिप्स बिस्किट रखे हुए हैं।

ये एक किसी का वेडिंग डेकोरेट किया हुआ दिख रहा है।

पीछे एक बड़ी विंडो है जिसमें ग्रिल लगी है।

और रास्ते के दोनों तरफ कुछ लंबे और पतले पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।